ये सामने ही कुछ कुर्सियां और एक दो टेबल रखी हुई है।

यहां पर बहुत सारे ट्रैक्टर खड़े हुए है।

और साइड में कुछ और भी पड़ा हुआ है कुछ कचरे के समान यह लग रहा है।

साइड में एक बैटरी की दुकान भी है।

उस साइड में दो ग्रीन कलर की बोतल रखी हुई है।

और उसके बगल में एक खाट पड़ी हुई है।

और ऊपर एक तिरंगा भी लगा हुआ है।

यह एक स्विमिंग पूल है।

और कुछ गुब्बारे नीचे स्विमिंग पूल में पड़े हुए हैं।

और उसके नीचे एक टेबल बिछी हुई है।

रेड कलर का कैंप रखा हुआ है टेबल के ऊपर।

आमने एक शीशे का गेट लगा हुआ है।

और बगल में एक टम्पु खड़ा हुआ है जिस--

और कुछ स्कूटियां भी खड़ी हुई है।

एक गाड़ी का कलर व्हाइट और एक का ब्लैक है।

सामने एक शीशा लगा हुआ है।

और एक ने रैड कलर का कुछ पहना हुआ है और यहां पर बहुत सा--